छोटी बच्ची स्लाइड से नीचे उतर रही हैं।

फोटो दिखाई दे रही--

एक दुकान के फोटो नजर आ--

जहां पर कुछ व्यक्ति उसमें नहा रहे हैं।

इस फोटो मे--

क्लीनिक की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर--

फोटो नजर आ रही है।